यहां पे रोड है दो लोग हैं ट्रेलर है और यहां पे बैठे हुए हैं।

ये अपने हाथो को देखते हुए है और यहाँ पे बिल्डिंग है --

यहाँ पे हम कपड़े का मील नज़र आ रही है और यहाँ पर कंपाउंड के बाहर है हरियारी जो हरियारी है गन्दा पड़ा हुआ है।

यहाँ पे कपड़ा मिलता है और एक यहाँ यहां पे काउंटर के एक आदमी बैठा हुआ है जो दिखा रहा है।

ऐसे ठीक है फिर नाम है यहां पे जो येलो कलर के पोगे है जो यहां पे के ऊपर रखे हुए--

यहाँ पर फिटनेस है जो एक आदमी डंपल उठाया हुआ है और बाजु में एक है जो उसको देख रहा है।

कमरे का लाइट चालू है आसमान है क्लियर है धूप है।

यहाँ पे एक होटल है जहाँ पर में कुर्सिया है और टेबल है कुर्सियों का लेवल अलग अलग लाल कलर के भी है।

और यहाँ पे एसी है जो एसी लगाये हुए है और यहाँ पर तस्वीर है यहाँ पे और यहाँ फेन भी है।

यहाँ पे मस्जिद है जो मुस्लिम लोग आ के नमाज पढ़ते हैं सर पे वाइट कलर की टोपी है और एक हाथ में बैठा हुआ है च चश्मा पहन के--

और यहां मुझे पे है ये एक लाइट चालू पंखा भी चालू और गुम्त की तरह गोल गोल नजर आता है।

और यहा से ही पाइप के सरिये से जहां पे काम चल रहा वहां तक को पहेचाने पहोचाने का काम करती है आसमान है आसमान नीला है।

और यहां पे पुस्तक की भी कि दुकान भी है और यहां पे भी है जो लाइट चालू है।

यहाँ पे एक पानी है जो पानी कलर नीला है और दो लोग बैठे हुए है एक नल के नीचे जो रात में चालू होता है ऑ --

यहाँ पर दो बाइक है और यहाँ पे है एक दुकान जो है --

एक वो आदमी है एक आदमी है इधर सेल्फी निकल रहा है एक आदमी थह रहा है और यहाँ पे है।

यहाँ पे गेट है जो बंद है गेट का कलर है चोकॉलाटी --

या कलर हैप्पी कलर और उसके बाद यहाँ पर है सामने आंगन मैदान है एंड ये है जहाँ का उदय की सोच है।

वे आदमी के पास बुक है जहाँ पे लिखा है फ़ेवरेट मेन वा--

यहाँ पे है गोल्ड राउन जीप जा रही है जो हरे कलर के--

ब्ल्यू वाले फुल से बनाया हुआ और बीच में है झुंड के फूल लाल फूल पीले फूल और यहां पे कोई बैठा हुआ है।

गेट है गेट आधा खुला आधा बंद है और यहाँ पे झाड़ियां है जो हरे और बड़े हैं।

यहां है मॉल जो सेंटाक्लॉज का बनाया हुआ है जो लोग आ रहे हैं वो रहे हैं और यहां स्पाई का--

वो इसके दांत में घर है जो फतों का है और एक नारियल का झाड़ है और--

यहाँ पे एक रूम है कैबिन है और वहाँ पे कुर्सी है काली कलर की और टेबल है टेबल पे पौधे रखे हुए जो शो के है।

और यहाँ पे डस्टबिन है जो रेड कलर का यहाँ सोफा सेट है जो बैठने के लिए है और यहाँ पे कांच का टेबल है जो यह पे दीया लगाया हुआ है।

जो यहां है जो नी अ पीले कलर के और यहाँ दीवाल है दीवाल पे--

होटल के बाहेर एक सिंटेक्स टाकी है जो पानी के लिए राखी हुई हैऔर यहाँपे है मीठी का ढेर यहपे है और यहाँपे है नारियल का झाड़ जो छोटा है।

और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं रेल का इंतजार करते टू व्हीलर हैं टू व्हीलर में हुई पीछे से और यहाँ पर गेट हैं गेट --

यहाँ पर पार्किंग है जो फोर व्हीलर पार्किंग किए गए एक आदमी जा रहा है और यहाँ पर टू व्हीलर भी है टू व्हीलर पार्किंग है यहाँ पर डस्टबिन है जो चूहे की शक्ल में में है हरे कलर --

यहाँ पे स्टेशनरी जो यहाँ पे है स्केच पेन स्केल और यहाँ पे है हती--

जो पानी में यूज किया जाता है और यहाँ पे है गाड़ी छोटी छोटी गाड़ी है।

और यहां पे है हराभरा जो बड़े बड़े झाड़ है। जो है --

और वहां पर है पानी जो वहां पानी रहे और यहां पर पौधे है जो छोटे छोटे शो के लगाए हुए हैं आसमान साफ है और सूरज है।

ये है बस स्टैंड जहां पे टू व्हीलर भी रुकी हुए है बस भी रुके हुए हैं कंडक्टर भी है जो जा रही है।

ये है डिमार्ट है यहाँ पे है चॉकलेट पार्ले किट कैट है और किस्म की यहाँ पे मोनाको है बिस्किट है।

यहां एक हॉस्पिटल है जहां पर दो पेड़ हैं और यहां पे कुर्सियां है जो स्टील की कुर्सियां है और यहां पे साफ है जो जो--

सिग्मा पब्लिक स्कूल है जिसका कलर है पिंक इंग्लिश मीडियम है नर्सरी एल_के_जी यू_के_जी --

पांचवी क्लास आपकी क्लास है और यहां पे है बोर्ड लिखा हुआ है नीचे और यहां आसमान क्लियर है धूप है।

यहाँ पे क्लासरूम है जो व्हाइट कलर की है पंखा है और यहाँ पे बेंच है जो बेंच कलर है चॉकलेट और यहाँ पे टेबल --

एक बोर्ड है जहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपकाए जाता है यहाँ पर टेबल है यह सब है सरकारी तकिया का कुर्सी है।

. जी का बाल काले है और वो उसकी आंख है और अ सिर पे बिंदी लगाई हुई है टिंकली--

यहाँ पे पिक्चर फॉरेस्ट्री का ग्लास है और सामने कुर्सी है जो रेड कलर के दो है और यहाँ पे चित्रकार है।

जो हरियाली है फुल हरियाली है और आसमान है जो सा नीला है।

यहाँ पानी है यहाँ पर कपड़े हैं कपड़े के अंदर चॉकलेट दिखाई दे रहा है।

ये गाड़ी है जो सजाई हुए है जो दुला दुलन के लिए सजाती है फूलों के जरिए हुए एक लाल फूल पीले फूल पिंक कलर के फूल है।

अ स्टैटू है जो बंदर का है एक बच्चा एक लड़की--

साइकिल से जा रही है और आसमान नीला है और यहाँ पे है झाड़‌ जो नारियल--

यहाँ पे एक लड़का है जो उसकी टोपी पहना हुआ है बॉय लिखा हुआ है जो यहाँ पे एक्शन करा हुआ है ऊपर हाथ नीचे हाथ--

बीच के किनारे जा के बैठे में कोई है जो पानी में भीग रहे हैं।

चॉकललेती है जो कलर खिड़की का है यैलो कलर और आसमान में थोड़े से बादल है।